काउंटर के पीछे दीवाल पर एक घोड़े की तस्वीर लगी है जिसके बाई और में रिसेप्शन होटल रिसेप्शन लिखा है और दाई ओर में चेक आउट टाइम बारह बजे दोपहर लिखा है।

काउंटर पर और भी बहुत कुछ है जैसे पौधे और प्लेट में रखे हुए कुछ अलग पौधे हैं।

सभी लड़कियों ने एक तरह का वस्त्र पहन रखा है।

इस फोटो में कुछ गैदरिंग दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक इमारत नजर आ रही है जो की नीले रंग का है और उसकी छत पर नीले रंग का नीले करकट रखा हुआ है।

वहाँ पे एक जैकेट भी है सामने में जोकी एक वर्कर या पेंटिंग करते वक्त शायद पहनने के लिए है।

इस चित्र में एक रूम दिखाया गया है।

उसके अंदर एक गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा है।

पत्थर की सीढ़ियो से दो कुत्ते नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दाईं शटर के पास एक स्टैचू अपने हाथ में पेंट का डब्बा लेकर बाईं ओर की शटर में कई सारी पेंट की बाल्टियां रखी हुई हैं।

दुकान की छत पर एक बोर्ड लगा है। जिस पर लिखा है यामाहा यामाहा बाइक कॉर्नर पेट यामाहा --

बैंक के सामने मे कुछ गाड़ियां खड़ी है और एक कार नीले रंग की कार खड़ी है।

बैंक के बाहर कई मोटरसाइकिल और एक कार खड़ी --

यहां पे एक बच्चा नीले रंग का मास्क लगा के कुर्सी पर बैठा है उसकी बाई ओर में एक गाढ़े नीले रंग का शर्ट पहन के एक बच्चा बैठा हुआ है और उसकी दाईं ओर में एक लड़का काले रंग का टी शर्ट पहन के खड़ा है।

यह एक सब्जी का दुकान का फोटो है यहाँ पर पिले रंग का केला भी है।

अ अव बहोत सारा डेकोरेशन हुआ है पीछे में --

इस फोटो में गुफे का सीन है।

सामने में एक कांच लगा हुआ है जिसके चारों ओर वुडन रंग की फ्रेमिंग की गई है।

और पीछे में कुछ घर भी दिख रहे हैं।

इस हॉस्टल के सामने में दो बड़े बड़े पेड़ है और एक छोटा पेड़ है।

इस चित्र में महाराष्ट्र के औरंगाबाद को पर्यटन राजधानी के स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए एक भव्य द्वार दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है जिसे एक ट्रेन की खिड़की से खींचा गया है।

तस्वीर में दो पुतले दिखाई दे रहे हैं जिनमें से एक ने नीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पजामा पहन रखा है दूसरे ने सुनहरे रंग का ब्लाउज और लाल रंग की चुनरी ली है।